इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि
इनके द्वारा टेबल कैसे बनाएँ
aव्युस बनाकर और bकॉपी पद्धति का इस्तेमाल करके अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस में चलते हैं
बाएं पैनल में टेबल्स आइकन पर क्लिक करते हैं
दायें पैनल पर हम टेबल बनाने के तीन तरीके देख सकते हैं
हम अभी क्रिएट व्यू विकल्प के साथ जाएँगे
इससे पहले व्यूज के बारे में सीखते हैं
व्यू क्या है
व्यू टेबल के समान है किन्तु यह डेटा नहीं रखता है
यह क्वेरी अभिव्यक्ति की तरह परिभाषित किया गया है जोकि केवल टेबल्स या डेटाबेस के अन्य व्युस से डेटा प्राप्त करता है
अत जब देखते हैं इसमें टेबल की तरह डेटा की कॉलम्स और रोज़ होती हैं
सीमित पहुँच की अनुमति देने के लिए व्युस का इस्तेमाल कर सकते हैं
या अंतनिर्हित टेबल कॉलम्स और टेबल डेटा की संरचना और नामों को छिपा सकता है
उदाहरणस्वरुप हम एक सरल व्यू बना सकते हैं जो लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करेगा
और गोपनीयता रखने के लिए हम उनके फोन नम्बर्स छोड़ सकते हैं
यहाँ अंतनिर्हित टेबल मेंबर्स होगा
लाइब्रेरी डेटाबेस के अन्य उपयोगकर्ताओं को व्यू में प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं किन्तु मेंबर्स टेबल में नहीं
इस तरह से हम केवल सदस्यों के नाम देख सकते हैं और उनके फोन नम्बर्स नहीं
ठीक हैमुख्य बसे विंडो पर वापस चलते हैं और इस व्यू को बनाते हैं
दायें पैनल पर क्रिएट व्यू पर क्लिक करते हैं
हम व्यू डिजाइन नामक एक नई विंडो देखते हैं और एक पॉपअप विंडो जो कहता है एड टेबल्स
मेंबर्स पर क्लिक करते हैं
और पॉपअप विंडो बंद करिये
अबहम व्यू डिजाइन विंडो पर हैं
और हम मेम्बेरिड और नामे फील्ड्स पर डबल क्लिक करेंगे
इद फील्ड को जोड़ना हमेशा लाभदायक है
क्योंकि यह हमें इस व्यू को किसी और सम्बन्धित टेबल से जोड़ने में मदद करता हैउदाहरणस्वरुप बुकसिश्यूड टेबल
हम फंक्शन्समापदंड जोड़ सकते हैं और इसे जिस तरह भी हम चाहें क्रम में लगा सकते हैं
किन्तु अभी के लिए हम मेंबर नेम्स को आरोही क्रम में लगाएँगे
इसके लिए सोर्ट रो के अंदर नामे कॉलम में सबसे नीचे भाग के खाली सेल पर क्लिक करते हैं
और फिर असेंडिंग पर क्लिक करते हैं
चलिए अपना पहला व्यू सेव करते हैं
यहाँइस व्यू के लिए एक विवरणात्मक नाम टाइप करते हैं View मेंबर्स नामे ओनली
और ओक बटन पर क्लिक करते हैं
अंतनिर्हित डेटा देखने के लिए सबसे ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करते हैं
और फिर सबसे नीचे रुन क्वेरी पर क्लिक करते हैं
और ऊपर हम एक नया भाग देखते हैं जो लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करता है
ध्यान दीजिये कि हम कोई फोन नम्बर्स नहीं देख रहे हैं
और यह हमारा सरल व्यू है
हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यूज को बना और उसको रूप दे सकते हैं
अगले विषय पर जाने से पहले यहाँ एक नियत कार्य है
सदस्यों को जारी की हुई पुस्तकों का एक व्यू बनाइए और केवल वह पुस्तक जोकि चेक्ड इन नहीं है
व्यू में निम्न फील्ड्स सम्मिलित करिये बुक टाइटल्स मेंबर नेम्स इश्यू डेट और रिटर्न डेट
व्यू को नाम दीजिये View लिस्ट ओएफ बुक्स नोट चेक्ड इन
ठीक है कॉपी तरीके का इस्तेमाल करके टेबल्स बनाना सीखते हैं
यह टेबल्स बनाने का एक सरल तरीका है यदि हमें पता है कि टेबल की संरचना काफी समान होने जा रही है
इसके लिए मानते हैं कि हमारी लाइब्रेरी के पास डीवीडीएस और सीडीएस हैं
और हम इस डेटा को मीडिया नामक एक नई टेबल में संचय कर सकते हैं
एक सीडी या एक डीवीडी के पास एक शीर्षक और एक प्रकाशित वर्ष हो सकता है उदाहरणस्वरुप
एक audioऑडियो और एक videoविडियो में अंतर करने के लिए हम एक मीडियाटाइप फील्ड प्रयुक्त करेंगे
अब चूँकि बुक्स टेबल के पास करीब करीब वही फील्ड्स हैं हम बुक्स टेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं
और फिर प्रक्रिया में हम फील्ड्स और टेबल को फिर से नाम दे सकते हैं
हम देखेंगे कैसे
मुख्य बेस विंडो में चलते हैं
यहाँ बुक्स टेबल पर दायाँ क्लिक करते हैं और हम कॉपी विकल्प देखेंगे
इस पर क्लिक करते हैं और फिर इस पर दायाँ क्लिक करते हैं
विभिन्न विकल्पों पर यहाँ ध्यान दीजिये
यहाँ एक पस्ते है और साथ ही यहाँ एक पस्ते स्पेशियल भी है
हम कॉपी और पेस्ट को एक विशिष्ट रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं
सम्भव रूप हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट एचटीएमएल या एक डेटाबेस टेबल
अतः हम यहाँ डेटाबेस टेबल चुन सकते हैं
या हम दायें क्लिक मेन्यू से पस्ते चुन सकते हैं
यह एक विजार्ड खोलता है और इस विंडो में हम सबसे पहले टेबल नामे के सामने मीडिया टाइप करके अपनी टेबल को फिर से नाम देंगे
इन विकल्पों में हम डेफिनिशन और दाता पर क्लिक करेंगे
नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
अगली विंडो मेंहम कॉलम्स जोड़ेंगे
इस नमूने के लिए बुकिड टाइटल और publish यियर चुनते हैं
अब हम बायीं तरफ की इन फील्ड्स को चुनेंगे और इनको दायीं तरफ खिसकाने के लिए सिंगल एरो बटन का उपयोग करेंगे
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिये
अगली विंडो में हम अपने कॉलम्स देखते हैं
यहाँ फील्ड्स को फिर से नाम दे सकते हैं और उनके डेटा टाइप्स बदल सकते हैं
हम बुकिड का नाम मीडिएड में बदलेंगे
और हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे
मुख्य बेस विंडो में यहाँ एक नई मीडिया टेबल है
अब टेबल को बदलकर उसमें एक नई फील्ड मीडियाटाइप जोड़ते हैं जो ऑडियो या वीडियो की सूचना रखेगा
हम अब टेबल डिजाइन विंडो में हैं
यहाँ अंतिम कॉलम में मीडियाटाइप दाखिल करते हैं
पब्लिश्यर के नीचे सेल पर क्लिक करते हैं
और फील्ड नामे के रूप में मीडियाटाइप दाखिल करते हैं और फिर टेक्स्ट या फील्ड टाइप चुनते हैं
अब टेबल डिजाइन को सेव करते हैं और हमने कर लिया
ठीक है हमने अभी कॉपी पद्धति का इस्तेमाल करके अपना मीडिया टेबल बनाया
ठीक है यहाँ एक अन्य नियत कार्य है
उसे विजार्ड टो क्रिएट टेबल पद्धिति का इस्तेमाल करके एक टेबल बनाइए
यहाँ एसेट्स सैंपल टेबल इस्तेमाल करिये और उसको फिर से नाम दीजिये असेटस्कोपी
और इस पद्धिति में विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण करिये
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर टेबल्स बनाने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा की कैसे इनके द्वारा एक टेबल बनाएँ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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद